सब दुकानें कपड़े बेच रहे हैं।

हम इसमे रेल की पटरी देख सकते हैं।

सारी की सारी मशीने बिल्कुल नईं हैं साथ में एक स्टील का ग्लास भी रखा हुआ हैं।

सामने एक लकड़ी की खिड़की है।

यह एक सड़क का दृश्य हैं।

इस छांव में बहुत सारी गाड़ियां हैं।

लाइटों का अच्छा प्रबंध है सामने सात आठ पुरुष भी खड़े हैं।

यह एक रेलवे स्टेशन का दृश्य है।

जिस पर एक स्नैक बार नाम की दुकान है।

गुरुद्वारा के चारों तरफ सरोवर बना हुआ है जिसमें लोग स्नान करते हैं।

जह एक स्कूल का दृश्य है।

सब अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं सबके कपड़े रंग के कारण खराब हो चुके हैं।

इसके बाहर बहोत सारा सीमेंट रखा गया है यह रात्रि का दृश्य है दुकान के बाहर तीन साइकिल खड़ी हैं।

बिजली की तारो से जुड़े हुए है।

इस घर की छत पर वुडेन काम किया गया है।

स्कूटरो की बहुत सारी वैरायटी हैं।

उनका रंग ज्यादातर सफेद व नीला है।

यहां का फर्नीचर भी अच्छा है।